चादर है और यहां पे चेय क्रीम कलर का पैंट स्वीच सब है ।

ये समुंदर ऊपर से पहाड़ पहाड़ों से पानी आ रहा है पहाड़ों मे आदमी आसपास पेड़ हैं आ बहोत सारा पानी आ रहा है इस --